ये कोई धार्मिक अस्थल ल लग रहा है जहाँ पर बहुत सारा आदमी आया हुआ है।

आदमी सब पूजा कर रहा है देख रहा है।

यहाँ पे आदमी सब मछली पकड़ के जमा करके रखे है।

ले जा रहे है और तराजू भी साथ में लाये है और तीन आदमी आये हुए है लगता है बेचने के लिए ले जाये--